अंकल साइकिल से जा रहे है एक पेड़ दिख रहा है पीछे इलाहाबाद बैंक दिख रहा है पीछे पीले कलर का चार्ट दिख रहा है उसके नीचे --

झाड़ू लेकर खड़े हुए है सब कपड़ा रख रखा है ब्लू कलर का पूरा कुर्ता पहन रखा है नीचे धोती हैं।

यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जिसमें ग्रे कलर की कमीज पहन रखे है ब्लू जींस पहन रखी हैं।

दोनों तरफ और इसकी दीवारे सफ़ेद है निचे ब्लू बॉर्डर है।

है सफ़ेद और बोर्ड दिख रहा है सफ़ेद कलर का प्लग डाल काले कलर का नीचे हरे कलर का --

यह एक मछली मार्किट दिख रही है ये आंटी बैठी हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का ब्लाउज पहना है।

और यह फ़रस काला दिख रहा है पीछे ब्लू कलर की लाइट --

फ़िल्टर लगा हुआ है गोल्डन कलर का और यहाँ सामने एक बुढ़ऊ अंकल खड़े है।

ये छत पर चुने की दुकान दिख रही है साइड में गुलाबी घर दिख रहा है।

एक अंकल खड़े है घर पे रुमाल सब बांध के सफ़ेद ग्रे कलर की पेण्ट पहन के ब्लैक कलर की शर्ट पहन के --

और हरे-हरे पेड़ दिख रहे है एक ठो भैया खड़े है गुलाबी कलर की कमीज पहन के ब्लैक पैंट है शूज हैं।

यहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो की पाँच छै करोड़ की है एक संतरी और पिंक है एक वाइट है एक ग्रीन है।

यह पावर ट्रैक है यहाँ पे वाइट कलर से पावर ट्रैक लिखा हुआ है इसका जो पीछे का है लाल कलर का है बोर्ड --